यह एक फिश मार्केट है यहाँ पर सब मछली लेकर बैठे हुए है सब मछुआरे बैठे है छाते लगा लगा के दूकान लगा के बैठे हुए है।

यहाँ दो व्यक्ति बैठे हुए हैं सर पर साफा बंधा हुआ है बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और एक आंबेडकर जी का फो पोस्टर लगा हुआ है पास में और पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत से लोग इस में नाहा रहे हैं एक पहाड़ जैसा दिख रहा है साइड में स्विमिंग पूल वो भी दिख रहा है पहाड़ दिख रहे हैं।

पर्चे लगे हुए हैं पास में एक ठेला दिख रहा है दो दुकाने दि --

कलर रखे हुए है अ क्लास का कलर ऑरेंज और सफ़ेद है पीछे एक नोटिस बोर्ड है उस पे हैप्पी दीवाली के --

का लिए उपास करती है और बच्चे फोटो क्लिक --

सामने गेट के ऊपर भी कुछ मोनो ल --

यह एक विशाखा डेयरी पार्लर है यहाँ दूध मिलता है एक जाली जैसी केबिन बनी हुई है ।

ऑफिसर के एक परदा दिख रहा है गुलाबी कलर का दुसरी तरफ भी एक परदा दिख रहा है दो व्यक्ति अंदर खड़े हैं गेट दिख रहा है छत दिख रही है।

इधर साइड से भी एक वाइट कलर का होल्डर लगा हुआ है घर दिख रहा है गेट दिख रहा है।

ये एक बहुत बड़ा किला दिख रहा है इसके आसपास लाल पत्थरों से डिजाइन किया हुआ है नीचे की ओर चढ़ाव बने हैं।

एक अर्थक फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है ये एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पर दो महिलाएं खड़ी हैं एक ने बुर्खा पहना हुआ है।

ये एक क्रिस्चनो का त्योहार बन रहा हैं यहाँ पिंक कलर का वो थर्माकोल का डेको सेल्फी पॉइंट बनाया हैं यहाँ पर सब बच्चे फोटो खींच रहे हैं।

इसमें ऊपर से भी रेड और लाल कलर के नीले कलर के ईशा मसीह का --

यह एक प्रिंटिंग प्रेस दिख रही है कागज़ का कारखाना है यहाँ पर कागज़ प्रिंट हो रहे हैं मशीनें लगी हुई हैं साइड में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

टोकनियों में रखे हुए हैं और संतरे रखे हुए हैं।